ये देखिए पार्क में हम लोग आ चुके है लाइट विट बहुत अच्छी से आसमान भी कलर में--

का है लगा हुआ है दो फोर व्हीलर भी लगा हुआ है कोई सरकारी स्कुल के पीछे बाउंड्री का ही है।

लगा हुआ सी और उसके बगल में कोई एक समी का पेड़ है यहाँ पर दिख रहे हैं बड़े सा --

ये देखिये रोड कि सीन आसमान का सीन है हरियाली-हरियाली पूरा दिख रही हैं बहुत सारी अच्छी सी हरा-हरा घास दिख रहा हैं।

तो क्या बहुत अच्छे सी मंदिर दिख रहा है इस पर रॉट कुछ की जंगल अच्छे सीन दिख रहे है।

यह देखिये जिम का है जो है रोज किया जाता है जिम

अच्छी से अच्छे लग रही है मौसम अंतराल बोहोत बहु अच्छे कोई स्टेशन ही है लग रहा है --